और कुछ मट्ठी का ढेर हैं बड़े बड़े पेड़ हैं।

दो गेट हैं लोहे के दो बाइक्स हैं।

कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक जेंस रस्सी पकड़े चौखट को पकड़ लगा रहा है।

यहां पैकेट्स हैं पैकेट हैं अह पैकिंग है प्लास्टिक के डब्बे हैं।

एक दुकान है टीन सेट पेड़ है और बेन्च है कुर्सी है ड्रम है।

औल छतरीया लटक रहे है झूमर है एक लेडीस जेंट्स आ रहे है चलते हुए।

एक लेडिस माक्स लगाए हुए हैं सिर पे कैप लगाए हुए हैं पंखा है एक जेंट्स है।

यहां कुछ जेंट्स बैठे हुए हैं एक ट्रक है गाड़ी है पेड़ है।

एक ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल और बॉल है अं पेड़ हैं वाइट कलर की ड्रेस पहन के अं रेड कलर की पहन रखी है।